इस चित्र में हमें ऑटोमोबाइल दुकान को देख रहें हैं इस दुकान में बड़े-बड़े पाँच लीटर के गैलन दिख रहे हैं।

गेट के चारों तरफ पेड़ पौधे घने घने दिख रहे हैं मेन गेट दिख रहा है गेट के किनारे एक बाइक भी खड़ी हुई दिख रही है।

अंदर बहोत सारी गाड़ियां दिख रहीं हैं बाहर एक टकला आदमी दिख रहा है जो कुर्ता पजामा पहने हुआ है।

फ्लॉवर पॉट भी दिख रहें हैं कुर्सी के नीचे--

इस चित्र में हम ईश्वर के मंदिर को देख रहे है यहां पर बहोत सारे भगवान रखे गए हैं।

पंडित के द्वारा पूजा की जा रही है दीपक जलाया जा रहा है भगवान के ऊपर फूलों की मालों का हार बना के चढ़ाया गया है।

इस चित्र में हम एक आकृति देख रहे हैं ये पार्क की दिख रही है ये स्टार नुमा आकृति है।

बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है जो सेल्ट और जींस पहना हुआ है।

बांध के ऊपर कुछ पत्थर नुमा आकृति दिख रही है जो एक से कई ज्यादा दिख रही हैं व्यक्तियों ने कपड़े पहने हुए हैं।

फर्स नीचे हरी-हरी घांसे दिख रही हैं पानी भी दिख रही है।

काली कलर की मशीनें दिख रहीं हैं फर्श में ग्रे कलर की टाइल्स दिख रही हैं।

सामने पीली पट्टियां दिख रही हैं सामने दरवाजे भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक जंगल देख रहे हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक लड़के को देख रहे हैं लड़के के द्वारा हाथों से मोबाइल को पकड़ा गया है वह लड़के ने घड़ी पहना हुआ है।

इस चित्र में हम उब्बी की ऑफिस देख रहे हैं जो बड़े-बड़े अक्षरों से उब्बी लिखा हुआ है दीवार में बहुत सारी फोटो लगी हुई हैं जिसमें सर्टिफिकेट दिख रहे हैं।

काली कलर की शर्ट और जींस पहने हुए आदमी खड़ा है।

कार के बगल में एक आदमी नीले कलर की शर्ट पहने हुए बैठा है।

जो कई रंगों के कपड़े पहने हुए हैं सामने एक काउंटर भी बना हुआ है काउंटर में प्लस का निशान--

यह चित्र हमे एक होटल का दिख रहा है होटल के बाहर एक काउंटर दिख रहा है काउंटर के ऊपर एक छोटा काउंटर और दिख रहा है सामने ग्लास दिख रहा है।

चारों तरफ जालीनुमा खिड़कियां दिख रही हैं ऊपर लाइटें दिख रहीं हैं।

इस चित्र में हम एक दुकान देख रहे हैं दुकान में अलमारियां लगी हुई हैं अलमारियों में तीन रो बने हुए हैं तीनों रो में सामान भरे हुए हैं।

कुछ फोटो फ्रेम टॉर्च भी दिख रहे हैं किनारे चार्जर भी दिख रहें हैं।

कांच से उनको अलमारियों को बंद किया गया है सेल भी दिख रहे--

इस चित्र में हम एक ग्राउंड देख रहे हैं ग्राउंड के चारों तरफ बहोत सारी पब्लिक दिख रही है बीच में बहोत सारे लोग खेल खेल रहे हैं।

कुछ चौड़ी रखी हुई है कुछ लंबी रखी हुई हैं एक के ऊपर एक गड्ढे बना के सफेद मार्बल को रखा गया है।

इस चित्र में हमें कुछ उद्यान देख रहे हैं उद्यान के चारों तरफ हरे भरे लंबे लंबे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

कुछ काली लाल सफेद सभी तरह की मछलियां दिख रही है।

बिल्डिंग के बाहर एक जालीनुमा काले कलर का गेट भी बना हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक पार्किंग को देख रहे हैं वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी सफेद कलर की है उसका दरवाजा खुला हुआ है यहां पर एक साइकिल भी खड़ी हुई है।

बाहर एक आदमी बैठा हुआ है जो नीली कलर की जींस पहना हुआ है अपने ऊपर हाथ के ऊपर हाथ रख के वह मोबाइल में कुछ देख रहा है उसके नाखून दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें पार्क की आकृति देख रहे हैं पार्क के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं सफेद लोहे की रॉड लगी हुई है।

उसके चक्के दिख रहे हैं चक्कों में पीले कलर का पेंट दिख रहा है ट्रैक्टर हरी कलर की दिख रही है सामने नंबर प्लेट भी दिख रही है।

इस चित्र में हम एक भवन को देख रहें हैं भवन क्रीम कलर का दिख रहा हैं उसमें बहोत सारी खिड़कियाँ दिख रहीं हैं।

एल्युमिनियम का काम भी दिख रहा है एक ट्रैक्टर की ट्रॉली भी दिख री है जो हरी कलर की है।

मेन गेट में एक लोहे का गेट भी दिख रहा है।

कुछ पीले कलर के बॉक्स भी दिख रहे हैं साइड में भी हमें गार्नियर का कलर दिख रहा है फैरम लवली दिख रही है जिलेट के आइटम भी दिख रहे हैं।

मिट्टियां दिख रही हैं बीच में पानी भी दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक नव निर्माण भवन को देख रहे हैं भवन के सामने कचड़ा ना जाने पर एक हरी कलर की मैट भी लगाई दिख रही है।

रेलिंग भी लगी हुई है जिससे मजदूर काम कर सके बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है।